अ अंदर में साइड अ दूल्हा दुल्हन है और आजू बाजु में बहुत सारे लोग उनको घेरे हुए है --

और रोड के किनारे से झाड़ है पेड़ है।

यह एक पर्यटन इस इमेज में मुझे एक पर्यटन स्थल नजर आ रहा है अ --

और अ बीच में एक बो बहुत बड़ा गोल सा बना हुआ है जहाँ पर फव्वारा लगा हुआ है --

ये एक महाराष्ट्र इस इमेज में मुझे एक अ हॉल दिख रहा है जिसके अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है सीढ़ी है ।

अ अलमारी लगी हुई है और खिड़की है खिड़की में पड़दा लगा हुआ है और बेड के ऊपर व्हाइट कलर का अ चादर बिछी हुई है।

अह इस इमेज में मुझे एक दुकान दिख रहा है जिसमें--

यहां पर बच्चे कूद कूद के खेल रहे हैं।

और कुछ खाने की चीजे से रिलेटेड पूरा सामान रखा अलग अलग कलर के --

पुराने जमाने का महल है ये और जो नीचे का जो आजुबाजु पथरीली एरिया है ।

इस इमेज में मुझे अं अ एक शॉ पिंग मॉल भी दिख रहा है।